ऊपर एक बहुत लंबा सा टीन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पहाड़ियाँ भी हैं।

पिछे बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

उनका रंग सफेद कलर का है।

आदमी काला रंग का जूता पहना हुआ है।

बहोत सारे पौधे भी दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रहा है।

सामने सूरज भी दिखाई दे रहा है।

कपड़े भी सूखने के लिए दिया हुआ है।

और ऊपर आसमान भी बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

सामने बहोत सारे तार भी हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है।

और एक नीला कलर का टीन दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

साइड में दो गाड़ी भी पार्किंग किया हुआ है।

सामने एक साइन बोर्ड भी डिखाई डे रहा है।

का रंग हरा रंग का है।

गेट के दोनों साइड में वॉल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

शोरूम के सामने बहोत सारे सीरिया भी हैं।

तस्वीर में मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रहा है।

अलमीरा भी दिखाई दे रहा है।

अलमीरा के अंदर बहोत सारे कंगन भी दिखाई दे रहा है।

ये एक शॉप दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं।